दीवाल के सामने बहुत सारे उपकरण भी रखे हुए हैं।

तस्वीर में कुछ लोग पानी में खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस छवि में एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिखता है।

यहां कुछ लोग जा रहे हैं।

इमारत के आसपास बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है।

इमारत में बहुत सारी खिड़कियां भी हैं।

उनके पीछे एक बड़ा सा काला पर्दा भी है एवं जमीन का रंग भी काला है।

हॉल में कई सारी कुर्सियां हैं अधिकांश कुर्सियों का रंग भूरा कलर का है।

इस छवि में बहुत सी मछलियां दिखाई दे रही है सभी सफेद और काले रंग की है।

स्टेज पर एक पोडियम भी लगा हुआ है जिसके पास एक तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है और उसको गुब्बारों से सजाया गया है।

दुकान से ऊपर एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक व्यक्ति हरे रंग का टी शर्ट पहने हुए खड़ा है एवं उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग भी लिया हुआ है।

लाल रंग की चार पहिया वाहन पर एक व्यक्ति काम कर रहा--

अलमीरा मे भी बहुत सामान अव्यवस्थित ढंग से रखे गए है।

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर कुछ काम कर रहा है।

और एक व्यक्ति सीमेंट मतलब ले जाते हुए नजर भी आ रहा है।

इमारत में कई खिरकियां हुई है आस पास हरे भरे पेड़ भी हैं एवं ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है।

गाय की दो छोटी छोटी सिंग भी दिख रही है।